राइट साइड में बहुत ज्यादा है ट्रीज है।

स्कूटी लोग भी नजर आ रहे है दो चक्का वाला।

आगे में वो फैन का जैसा दो गोल-गोल साइड में है।

और टेबल भी है बैग्स भी है।

और ऊपर में डेकोरेशन बहुत सुंदर से कर के रखा है।

ये एक रूम को दिखाया गया है।

साइड में आलम मरियम का वो स्टैचू भी है।

घास फूस ग्रासेस लोग नजर आ रहा है।

और यहां में फ्लावर्स भी डाल के रखा है।

और क्लॉथ जो वाइट का है और साथ में बहोत सारा लोग यहां पे और अपना अपना घर जाने के लिए कर रहे है।

सी_सी_टी_वी का नाम अलग अलग लिखा है ए_एस_एस ।

रेड कलर का पिलो है कार्पेट जो अलग अलग कार्पेट लोग भी है।

आगे पीछे में बहोत ज्यादा अ पेड़ पौधा नजर आ रहा है।

और उसके आसपास और भी गाड़ियां है।

एक ग्राउंड नजर आ रहा है।

ब्लू कलर का घर नजर आ रहा है।

यहां में बहुत ज्यादा गाड़ी लोग दिखाई दे रहा है।